और इस रोड के पास एक एस डी इंटर कॉलेज हाई स्कूल महाराज सिंह कॉलेज लिखा हुआ है।

और एक टंकी बहुत बड़ी है जिसमें कुछ होगा एक बड़ा पेड़ है और बहुत सारा सामान इधर --

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

झोपडी सी के अंदर और एक व्यक्ति ढोल बजा रहा है।

जो गेट के पास दीवार है उसपर स्टिकर लगे हुएं हैं।

फूल भी है एक डस्टबिन भी है और पीछे बहुत सारे पेड़ और जाली भी है।